यह एक डाकघर की तस्वीर है जो ग्रामीण इनेक इलाका में है और डाकघर खुला हुआ है बाहर में वो व्यक्ति है जो झाड़ू लग रहा है और वो हाफ टी-शर्ट और पजामा पहना हुआ है उसके--

और और नदी में जो पानी बहुत ज्यादा है और पुल भी बहुत ही लम्बा-चौड़ा पुल है बहुत लम्बा पुल है।

--और बहुत बड़ा नदी है और नदी में पानी बहुत ज्यादा है और नदी के बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का पूल है और पूल में जो यहां पे है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एकदम ब्रिज है।

पेड़ भी है जो की काफी मजबूत पेड़ है और इसके पत्ते भी काफी हरी भरी है और बहुत मजबूत है।